पत्थरों से बनाए गए है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग के सामने एक कंपाऊंड है उस कंपाऊंड के सामने एक मिट्टी का रेत है।

ऊपर आकाश है वह नीले कलर का है पीछे बहुत सारी बिल्डिंग भी है।

यहाँ पर एक भिंत है उस भिंत पर एक बहुत बड़ी चित्र बनाई गयी है उसके सामने एक मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर--

वह मूर्ति पत्थरों से बनाई है उनके सामने एक टेबल है वह टेबल लकड़ी का है।

उसके सामने एक बाइक खड़ी है वह काले कलर की है सामने एक रस्ता है वह सीमेंट का रास्ता है ऊपर आसमान है वह नीले कलर का है।

वहा ऐसी बहुत सारी दुकाने है एक दुकान है उसके सामने कुछ औरते है।